और इसमें बहोत सारी लाइट लगे हुए एक ट्रैक्टर लगे हुए एक स्कॉर्पियो लगे हुए हैं इसके पीछे पानी टंकी है।

इसमें एक महिला है जो मोटर द्वारा पाइप द्वारा पानी पटा रहे हैं।

ये ई रिक्शा शोरुम हैं जिसमें ई रिक्शा मैकेनिक काम कर रहे हैं एक चेयर लगे हुए एक कैमरा लगे हुए हैं।

और एक कार जा रहें हैं एक गार्ड भी खड़े हुए हैं।

और इसमें बहोत सारे मशीन दिख रहे हैं और इसमें बहोत सारी कुर्सी भी लगे हुए हैं।

और एक में वो घड़ी लगे हुए हैं गेट लगे हुए है खिड़की भी दिख रहे हैं इसमें।

और एक पेर भी दिख रहा है एक छोटे छोटे रूम भी दिख रहा इसमें एक--